हमारे जीवन में बहोत आवश्यकता है।

प्यारी प्लेस है और देख सकते हो आप लोग के बाहर नीचे काफी सुंदर सुंदर लग रहा है।

सब काम कर सकती हैं लड़कियां काफी--

कितने प्यार से ये काम कर रहे हैं।

आज के दौरान एक कपड़े की दुकान होनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि मनुष्य को अपनी जीवन में कपड़े पहनना बहुत जरूरी है।

कम करना हो या अपनी फिटनेस का ध्यान रखना हो तो जिम में काफी चीजें होती है जिससे आप सीख सकते हो।

विवाह मनुष्य की लाइफ में ना काफी--

दो रिश्तो को एक करता है मतलब एक लड़कों के रिश्ता एक लड़कियों के रिश्ते को जोड़ता है।

सब कुछ सीखते हैं उठना बैठना रेहना सेहना बोलना की बड़ों से कैसे बात करते हैं छोटों से कैसे बात करते हैं।

काफी सुंदर जगह है यहां पे आप--

इनकी बॉडी में काफी येसी चीजे हैं जो मनुष्य को करना पड़ता हैं।

डेली नीड्स के संबंध हमारी लाइफ मे बहोत आवश्यकता है क्योंकि ये काफी अच्छी चीजे काफी अच्छा सामान मिलता है।

कभी यही हमें जरा हो तो परफ्यूम लगा कर जा सकते हैं हमारे से काफी अच्छी स्मेल आती है।

काफी अच्छी चीज होती हैं नेचर ।

बरफ पड़ती है तो इन पहाड़ों का नजारा बहुत ही सुंदर हो जाता है।